ये फोटो हा कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी करताला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ की फोटो ऐ--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

यह चित्र एक बाजार के जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं और फूल-वूल है बहुत सारे और आम के पत्ते हैं वो लटका है ऊपर में बोरी ओरी--